मास्क लगाए हुए हैं चार्जर लगा हुआ है।

डस्टबिन रखा हुआ है लाइट जल रही हैं।

यहां पर कुछ लोग खड़े हुए हैं।

कुछ लड़कियां बैठी हुई हैं पेड़ पौधे लगे हुए हैं।